और ट्रैक पैंट पहनी हुई है एक ने शर्ट पहना है कितने शॉट पाक पैंट चप्पल पहनी है झाड़ है यहाँ पर --

यहाँं पे नीली कलर की रिक्शा है और अलग-अलग कलर की रिक्शा है। यहाँं पे पेड़ है यहाँ पे एक बिल्डिंग है।

बस है। बस में बहुत सारे आदमी चढ़ रहे हैं। ऊपर भी चढ़ रहे हैं। एक औरत है। जिसने कुर्ता पहना है दुप्पटा लिया हुआ है।